यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और गेट --

यहाँ पर मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है और यहाँ पर बाइक दिखाई दे रही --

व्हाइट कलर का पेंट हो रहा उस बार घर की दिवालो पर एक--

मकानो में ऑरेंज कलर पेंट हो रहा है और ई--

यहां पर मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में वाइट कलर --

पेंट हो रहा है बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां भी है और लोहे की जाली भी लग रही है और बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड का अगर एलो कलर है।

यहाँ पर मुझे एक अम्म घर दिख रहा है घर में मुझे--

दिखाई दे रहा है मुझे गोल्डन कलर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक कांच का --

और यहां पे सामने टॉफी लग रहा है कीबोर्ड रेड कलर की है या है या ग्रे --

यहां पर मुझे गोल्डन कलर के फत्थर दिखाई दे रहे--

ये यहां पर मुझे मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में मुझे--

मे गोल्डन कलर लग रहा है और दीवाल में मुझे कांच लग रहे हैं और नीचे भी कांच--

ये मुझे हॉस्पिटल के सामान दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक पलंग है।

यहां पर मुझे एक चित्र बना हुआ है यहां पर--

दो चेयर रखी हैं चेयर उम्म लोहे की है और वो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है है दोनों--

और यहाँ पे कुछ अ यलो कलर का भी--

ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है खिडकियां तीन दिखाई दे --

ये मुझे एक मॉल दिखाई दे रहा है मॉल में मुझे पहले तो--

यहां पर मुझे बहुत सारे लोहे के इंगल वगेरे दिखाई दे रहे हैं लोहे के मुझे--

गद्दा रेड कलर का दिखाई दे रहा है उस में मुझे पजामा वाइट कलर का पहना हुआ है और--

यहाँ पर मुझे एक वाइट कलर का घोड़ा दिखाई दे रहा है घोड़े --

अ ऊ तीन लोग नीचे खड़े हुए है एक ने--

यहाँ पर मुझे ट्रक दिखाई दे रहा है वो लोहे का है और यहाँ लोहे के बहुत सारे सामान है ट्रक में से लोहे का सामान उतर रहा है --

पेन रखा है और मुझे उसने टोपी लगा रखी है टोपी वो वाइट कलर की--

बिल्डिंग है बिल्डिंग में गोल्डन कलर पेंट हो रहा है लाइट लग रही एक।

यहाँ पर मुझे मैदान दिख रहा है मैदान में एक बच्चा खड़ा हुआ है।